और इस झील के आजू बाजू बहोत सारे बड़े बड़े चट्टाने दिखाई दे रही है।

इस फोटो में बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

इस दुकान में लोग कपड़े खरीदने गए हैं और दुकानदार कपड़े निकाल कर ग्राहकों को दिखा रहा है।

और एक आदमी नीले शर्ट में खड़ा हुआ है।

ये रोड के कॉर्नर की फोटो दिखाई दे रही है।

बहोत ज्यादा मंजिला हैं और मैदान पूरा खाली हैं अपार्टमेंट सफेद कलर का हैं।